और गले में इसका बंधा हुआ है।

और वे कांच से बना हुआ है।

जिसके अंदर बहुत सारे रैक में डिब्बे रखे हुएं हैं।

कुछ टावर भी दिखाई दे रहे हैं।